ऊपर दी गयी फोटो समुन्दर के किनारे की है शाम को लोग यहाँ आते है अपने फॅमिली के साथ अपने बच्चो के साथ लोग अपने दोस्तों के साथ भी आते है और शाम बिताते है।

सुबह के समय इस पार्क में बहुत चहल पहल रहती है। कई लोग अपने पालतू जानवरो को सुबह के टाइम पे टहलाने भी लातें है। सुबह के समय यहाँ पे जो सूरज की किरणें पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगता है।

उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बहोत ही सुन्दर है थोड़ी सी देर में यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आयंगे और उनके जयमाला का समारोह शुरू होगा।